और कुछ ब्लैक बीच मे कुछ व्हाइट सी पीछे मे --

बन रहे है बहुत सारे दिख रहे है यहाँ |

के और सारे छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं यहाँ पे --